शादी में गये हैं लोग लग रहा एन्जॉय करने गये हैं लोग शादी विवाह में जो की --

और ज्यादा दुकान है यहाँ पे बहोत ज्यादा दुकान है ।

लेडीज लोग हैं बच्चे गोदी में लिए हैं जो की बहुत अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ का नजारा।